वाइट कलर का डिज़ाइन किया हुआ है एक बॉक्स है एक वाइट कलर की मशीन रखी हुई है ।

यह वाइट कलर का प्लेट है प्लेट में कुछ खाने की चीजे है जिसमे एक वाइट कलर का--

यह एक रोड है जिसपे ईट बिछाई हुई है जिसपे घाँसे जली हुई है।

यहाँ पे हरियालिया है कुछ दूर पर एक पहाड़ दिख रहा है पहाड़ पे बहुत सारी घासे दिख रही हैं |